और कुछ ग्रिल भी लगे हुए हैं।

और मस्जिद के अंदर एक पंखा भी लगा हुआ--

इस स्विमिंग पूल के अंदर हमें कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक शाखा कार्यालय है।

इस तस्वीर में हमें चार इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ीया दिखाई दे रही हैं।

और सफेद कलर की एक कार भी खड़ी है।

इस तस्वीर में हमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक होटल है होटल के अंदर कुछ मेज और कुछ कुर्सियां भी रखी हुई है।

यह एक स्कूल है और स्कूल के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है की राजकीय इंटर कॉलेज सरनपुर।

यह एक मंदिर है मंदिर के पास कुछ लोग खड़े हुए हैं और बराबर साइड में कुछ मकान भी बने--

यह एक गैराज है गैराज के अंदर एक वाइट कलर की कार है।

बराबर में एक मकान है। मकान पे भी ऊपर एक ग्रील लगी हुई है और मकान में एक लोहे का गेट है।

इस होटल के अंदर एक हमे पंखा भी दिखाई दे रहा है।

और ऊपर के साइड दो गमले भी रखें हुए हैं।

निचे पत्थर बिछा हुआ है और बरोबर साइड में लाल कलर के बैनर लगे हुए जिनपर कुछ लिखा हुआ है।